और सड़क के किनारे पर बहुत सारी ऑटो रिक्शे खड़ी हुई है।

और ओ सामने जो ऑटो रिक्शा नजर आ रहा है इसका रंग काला है।

और ये केक चॉकलेट केक है और इसके ऊपर व्हाइट कलर की क्रीम भी है।

और इस किले का सारा रंग उड़ गया है।

और उस लड़के ने जाकिट पहन रखी है। उस जाकिट का रंग काला और गुलाबी है।

जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूं यहाँ पे बहोत सारे स्पीकर बॉक्स लगे हुए हैं।

और इन पर्दो के पीछे से एक मेला भी नजर आ रहा है।

इस घर का रंग तोतिया और नारंगी है और इसके सामने एक कार खड़ी हुई है। उस कार का रंग सफेद है।

और इसमें बहुत सारी मिर्चियों के पौधे हैं।

और इन मोटर साइकिलों के सामने दो आदमी नजर आ रहे है एक आदमी बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ हैं।